इस फोटो में रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारा चेयर लगा हुआ है।

इस फोटो में एक ठो रूम दिखाई दे रहा है जिसमें एक बेड नजर आ रहा है।

येलो कलर का भी लाइट दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर का भी लाइट दिखाई दे रहा है।

एक ठो व्हाइट कलर का बड़ा सा बोर्ड भी दिखाई दे रहा है।

और यह रात का समय है पीछे में पेड़ भी है बड़ा बड़ा।

और एक ऑफिस भी दिख रहा है जिसमें ए_सी रखा हुआ है वाइट कलर का।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

और बगल में इंटा रखा हुआ है बहुत सारा।

इस फोटो में एक दुकान दिखाई दे रहा है जोकि साड़ी और कपड़े का दुकान है।

इसमें अलग अलग तरीके का साड़ी और अलग अलग कलर का साड़ी दिखाई दे रहा है।

और आदमी भी दिख रहे हैं रोड पे चलते हुए।

बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड भी खड़ा है जो कि फोन पे बात कर रहा है।

कोरियर एंड पार्सल ऑफिस और वहां पे एक व्यक्ति खड़ा है।